पुराना होने के बावजूद ईस्त्री करने के बाद कपड़े नए जैसे दिखते हैं हमें ईस्त्री कपड़े पहने में बहुत अच्छे लगते हैं।

मैं लोगों के पैन कार्ड आधार कार्ड ला दिए जाते हैं। यहाँ पे लोग खाता भी खुलवा सकते हैं। उससे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।

टेम्पो खड़ी है मैजिक खड़ी है इसमें लोग सफर करते हैं । इस गली में गाड़ी आती जाती रहती है ।

यहाँ पे बहुत भीड़ होती है।